उस दरवाजे पे बैगनी रंग से पैंट किया गया है और वह खुला हुआ है।

की रोशनी ही है। आसपास हम एकाद दो वाहन को भी खड़ा हुआ देख सकते है और यह छै सात लोग का ग्रुप है।

कसरत करने वाली काफी सारी मशीनो को देख सकते है।

इस तस्वीर मे हम एक स्कूल का कॉरीडोर देख सकते है जहां पे हम काफी सारे बच्चे को बैठ हुआ--

यहाँ पे हम काफी अलग-अलग प्रकार के खिलौनों के देख सकते है।

यहाँ पे काफी सारे ब पैंट के डब्बे है स बी स बड़े साइज के भी छोटे साइज के भी और मीडियम साइज के भी--

दोनों काले रंग के है और आसपास काफी सारे अलग -अलग प्रकार के और ऊंचे -ऊंचे वृक्षों को देख सकते हैं ।

यहाँ पे हम काफी सुंदर सजावट को देख सकते है और काफी सुनहरे रंग से सजाया गया है

इस तस्वीर मे हमे एक दुकान दिखाई दे रही है जहां पे ढेर सारे स सब्जी और फल फ्रूट बिक रहे है।